यहा एक मकान है मकान पे पोस्टर लगा है पोस्टर पे कुछ लिखा हुआ है देवरों पे भी बोहोत कुछ लिखा हुआ है नीचे एक ब्यक्ति खारा है ब्यक्ति के पास ऑटो है एक मकान मे बोहोत सारी खिरकिया दरवाजे है ।

यहा एक ग्राउन्ड मे खेल प्रतियोगिता चल रही है जिसमे कुछ बच्चे खेल खेल रहे है और आस पास लाइन ए बन्नी हुई है बोतल रक्खी हुई है।

एक हल है जिसमे बोहोत सारी गरिया ऑटो मोटरसाइकिल स्कूटी ओर बोहोत सारे ब्यक्ति खरे हुए है यहा पे बोहउत सारे पंखे लगे हुए है लाइट के तर लगे हुए है एक पोस्टर लगा हुआ है इसपे कुछ लिखा हुआ है।

एक क्लास रूम हे यहाँ पर सर हे टेबल लगी हुई हे टेबल पर वह सर बच्चे बैठे हुए यहाँ पे ए_सी लगी हुई हे यहाँ पे फॅन लगे हुए हे यहाँ पे कमरे में लाइटे लगी हुई हे|